इस चित्र में दरवाजा है दरवाजे पे लाल कलर का बो प्लस लिखे से ऊपर बोर्ड बना सो है सामने प्लस है।

नीचे पत्थर व्हाइट है कार में कुछ लिखे सो है और खिड़की दिख रहा है खिड़की में पर्दा है और दो टायर दिख रहा है।

पेक करती हुई थैली लेके खड़ा है। बाइक पे गो एक बच्चा एक बच्ची जारे --

एक मैदान है। मैदान में एक घर है बाजू में एक झाड़ दिख रहा है। दीवाल का --

ईंट का वो बनात वो बनायो सा है बहुत सारे झाड़ दिख रहे है नीचे गाड़ी है खड़ी उसके आजू बाजू गेट है।